इस पूल में खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

सात ही एक औरत और एक आदमी दिखाई दे रहे हैं |

और बहुत सारे साइकिल और --